इसके ऊपर मुझे कुछ काई जमी हुई नज़र आ रही है छोटे-छोटे कुछ पेड़ छोटे-छोटे कुछ पौधे नज़र आ रहे है इसे मौसम काफी अच्छा नज़र आ रहा है आइड साइड मुझे दूर-दूर तक कुछ बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे है।

सामने की तरफ मुझे सफ़ेद कलर का घर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मुझे वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हिन्दी में कुछ लिखा दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ मुझे कुछ एक्टिवा और कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं ।

पत्थरों के ऊपर कुछ बड़े-बड़े पत्थरों के ऊपर से पानी नजर आ रहा है इसके साथ मौसम काफी साफ नजर आ रहा है सूरज निकलता नजर आ रहा है और कुछ पेड़ भी नजर --

सभी तरफ मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का कलर मुझे ग्रीन आ रहा है कुछ लाइने नजर आ रही है जो की रेड कलर नीचे की तरफ वाइट कलर --